ये भी देखो दर्शनीय स्थल है और कुछ मूर्ति रखाया हुआ है और पीछे--

और एक अह्ह्ह् पीछे की ओर घर है ये बेहद खूबसूरत--

हा तो आप देख सकते है की मस्त पत्थर आकर का है और पीछे पत्थर-पत्थर का दर्शनीय स्थल बना हुआ है और बादल रंगीन में दिख रहा है और वो --

हाँ तो आप ये देख सकते हैं की ये गुप्ता वस्त्रालय और शर्ट और बैग दिख रहे है जो बेहद खूबसूरत हैं।

यहाँ पर बहुत ही सामान दिख रहे जो बेहद खूबसूरत है।

हाँ तो आप देख सकते है की ये जंगल का नजारा है जहाँ पर दो व्यक्ति आए हैं घूमने और एक व्यक्ति एक अ ले के--